कुछ संगीत बजाने के यंत्र लेकर बैठे है। पीछे कुछ मछली व मगरमच्छ की लकड़ी से बनी --

कुछ लोग बैठ कर कंप्यूटर के आगे काम कर रहे हैं |

जहाँ अभी कोई भी नहीं है |

इस चित्र मे कुछ बालक और बलिकायें --

पीछे एक बोहत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है |

और ऊपर उसके गुम्बद पर सुनहरे रंग का रंग किया गया है |

इस चित्र में कुछ बालक खेलते हुए नज़र आ रहे हैं ।

वहाँ काफी सारे लोग अपनी-अपनी गाड़ियों पर खड़े होकर --

यह चित्र भगवानों की मूर्तियां रखी गई हैं ।

वहाँ कुछ लोग खेलते हुए नज़र आ रहे हैं ।

इस चित्र में एक रेल्वे स्टेशन पर --

सीढ़ी रखी हुई है। बाहर एक ऑरेंज रंग का डब्बा रखा हुआ है।

इस चित्र में एक दुकान के बाहर दो नई --

वहाँ बाहर एक आदमी जाता हुआ दिख रहा है ।

आस पास में कुछ बिल्डिंगे हैं। वहाँ कुछ दुकाने है। उन पर बोर्ड लगे हुए है।

उस बिल्डिंग के बाहर कांच लगे हुए हैं वहाँ ऊपर काफी सारे बोर्ड लगे हैं ।

आगे कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं ।